और बहुत सारी फोटो भी लगी हुई है।

और ये यहां पे लाइट भी दिख रही है और यहां पे ये चर्च दिख रहा है।

काले रंग की भी है ब्राउन कलर की भी हैं।

पेंटिंग कर रहे हैं यहां पे गमला भी रखा हुआ है।

और यहा पे लाइट भी लगी हुई है।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

एवं सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।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

और यहां पे एक शीशे का गेट भी दिख रहा है यहां पे ये पटडी --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

और यहां पे आप देख सकते हों पाईंट भी दिख रहा है।

और ये मिट्टी की तस्वीर बना रखी है बहुत अच्छी लग रही है।

और यहां पे ये बहुत सारे सब्ज़ियां रखी हुई है रहे हैं।

पे आप देख सकते हो इस आदमी ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं यहां पे आप देख सकते हो--

कुर्सियां रखी हुई हैं यहां पे आप देख सकते हैं।